कुछ स्कूटर भी दिखाई दे रहे हैं। जिस पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए बगल में भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो भी जल रहा है। आगे भी बहुत सी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर यहां पर कुछ अ जिम करने के लिए मशीनें रखी गई हैं। बगल में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो गंजी पहने हुआ है। आगे कुछ लाइटिंग की गई है। पीछे एक बहुत बड़ा सा पंखा रखा गया है।